इसके दोनों तरफ मेटल रेलिंग लगी हुई है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से यूज कर सके।

काउंटर के पीछे एक सफेद कुर्सी रखी है।

ऊपर एक हार्डवेयर और सुमित की दुकान का बोर्ड लगा है जिसमें एम_एस शर्मा हार्डवेयर लिखा है।

बीच वाली स्लीव्स में अलग अलग रंग की साबुन और डिटर्जेंट दिख रहे हैं।

काफी लोग जैकेट और मफलर पहने हुए हैं।

पीछे एक ग्रीन शेड वाली बिल्डिंग है जो पत्थर तोड़ने या किसी फैक्ट्री का हिस्सा लग रही है।

पीछे की रेक्स पर बहुत सारी चीजें रखी है जिसमें मसाला तेल बिस्कुट और--

ऑरेंज रंग की हल्के वजन की कुर्सियां टेबल के आसपास रखी है।

पीछे बड़ी बड़ी अलमारियां लगी है जो फर्नीचर शोरूम या स्टोर रूम होने का संकेत देती है।

यह एक छोटी जगह लग रही है जिसमें अधिक सामान फिट करने के लिए लटका कर रखा गया है।

बीच में एक भरा पोस्टर लगा है जिसमें आनी रेस्टोरेंट कम बर लिखा है।

बिल्डिंग के ऊपर आईरन रोड्स दिख रहे है।

इधर की दीवार पर सफेद या हल्का रंग की लिखाई दिख रही है।

नीचे बाल्टी बर्तन और लकड़ी की बोट रखे है।

एक बाइक भी एक तरफ खड़ी है।

तारों तरफ पेड़ पौधे और हरी घसा है पीछे एक ढांचा दिख रहा है जो अधूरा यह टूटा फूटा लग रहा है।

पीछे एक और आदमी है जो शायद एक्सरसाइज कर रहा है।

दुकान के बाहर और अंदर ग्लास का शो केस है जिनमे बेकरी के सामान जैसे कि केक बिस्कुट और ब्रेड रखे है।

मुझे एक आदमी नाई लड़के का बाल काट रहा है हाथ में कन्घी और मशीन है।

पूरे एरिया पानी से भरा है जिसपे लोग इंजॉय कर रहे हैं।

मिरर के नीचे एक वुडन टेबल है जिसमें समान रखा।

ब्लू रेड और कार्टून प्रिंट वाले ट्रेक पैंट्स और टीशर्ट दिख रहे हैं।

बीच में एक काली एस_यू_वी हुई दिख रही है।

बगीचे के कोने पर छोटी हरी झाड़ियां और फूलों की पौधे लगे हैं।

छे एक व्यक्ति गोल्डन और ला लाल रंग की धार्मिक वस्त्रु पहन खड़े है।